पैकेट रखे हुए है पेनेट रखी हुई है।

पेड़ - पेड़ लगे हुए है बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है।

ये एक जिम है यहां पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे है बड़े-बड़े डंबल रखे हुए है।

एक आदमी ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहने हुए हाथ में ब्लैक कलर का मोजा पहने हुए है।

ग्लोबल रखा हुआ है कुछ चेयर रखी हुई है भारत का नक्शा बना हुआ है।

कथई कलर का है जिस के कान बड़े-बड़े है।

ये एक पार्लर है यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है।

सारे बड़े-बड़े छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है हरियाली छाई हुई है।

भगवान की प्रतिमा बनी हुई है।

के बने सामान रखे हुए है यहाँ पर--

कुछ लोहे की जाली लगी हुई है।

ये एक बहोत बड़ा घना जंगल है दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बड़े-बड़े पेड़--

बिच में झंडे का स्तंभ लगा हुआ--

बहोत दूर तक फैली हुई है बहोत पानी भरा हुआ है इस नदी की पार पर कुछ लोग खड़े हुए है।

ये आयकर कार्यालय है इस की बहोत बड़ी बिल्डिंग लगी हुई है।

नीली रंग का बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ इस बिल्डिंग में बाहर--

आस पास मे लिफ्ट है सीढ़ियां लगी हुई है।

यहाँ पर पत्थरों पर कोई लोग बैठे हुए है पानी का झरना भरा हुआ है झरने के पास मे --

बहुत सारी हरियाली छाई हुई है जगह -जगह पर सुन्दर-सुन्दर पेड़ - पौधे लगे हुए है।